गाइस जैसा की आप देख सकते है यहाँ पे रोड बनी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आप को दिखाई दे रहे हैं बहुत साड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं बाइक दिखाई दे रही हैं।

एंड पीछे देख सकते हैं आप को बहुत सारे एक्सरसाइज के सामान दिखाई दे रहे होंगे पीछे जो है नीचे जो है ब्राउन कलर की मेट बिछी हुई है सामने ग्रीन कलर का--